पीछे की तरफ नीला आसमान और उस गेट की बनावट बहुत सुन्दर लग रही है ऊपर की तरफ दो मीनारें दिखाई दे रहे हैं अभी इसमें कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा।

साइड मे बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है नीचे की तरफ हरे भरे पेड़ बहुत सुन्दर लग रहे है।

इस चित्र में दिखाई दे रहा है साइड में आईसीआईसीआई बैंक दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ ए_टी_एम मशीन सटर दिखाई दे रहा है।

चित्र मे सामने नीला आसमान और सामने की तरफ एक मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है पीछे हरे भरे पेड़--

लोग उसमे घुमते नजर आ रहे है नीचे की तरफ घास दिखाई दे रही है चित्र बहुत सुन्दर लग रहा है।

इस चित्र में सामने नीला आसमान और एक बड़ी बिल्डिंग दिखायी दे रही है नीचे की तरफ हरा पेड़ दिखाई दे रहा है सामने बहुत सारी गाड़िया खड़ी नज़र आ रही हैं।

इस चित्र मे बैंक ऑफ बड़ाैदा दिखाई दे रहा है।